लाल गुलाबी और येलो कलर के फूल का अच्छी डेकोरेट कर रखी चलता रोड है।

पत्थर की डोलिया बनाई गई है बहुत सारे पेड़ हैं ऊपर लाइट लग रही है खुला आसमान है।

यह एक दुकान है जिसका शटर खुल रया है पु पुरानी सी दुकान है एक मुढ्ढा रखा है एक बाइक है मीटर लाग रहा है।

और बॉक्स बनाया हुआ है इसमें पेट्रोल पंप में बहोत सारा पाइप वगैरह है गाइस मम पेड़ है वगैरह खींची हुई है।

और कुछ पुराने घर दिख रहे हैं टंकियां हैं पानी की।

ये एक शीशे की दुकान है साथ में एक शटर है बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं बहुत सारे तार हैं यहां पे बहुत सारे बैलून है जो रेड --

बाइक खड़ी है कैंपर है पानी का कैंपर है सीढ़ियां वगैरा लगी हुई है अ साथ में गली है भीतर एक बाल्टी र--

कुछ कीचड़ सा है कच्चा रास्ता है सुखी घास है।